यह पिक्चर एक पार्क का है।

जिसमें काफी सारे पेड़-पौधे हैं।

जिसका नाम डेली नीडस सुपरमार्केट है।

इसमें कुछ गार्डन भी है।

जो ग्रिल से कवर है।

यह पिक्चर एक रोड साइड फार्म का है।

जिसमें एक कपल अपनी पिक्चर क्लिक करवा रहा।

नीचे एक वाइट फर्श है और ऊपर वाइट कलर से डिज़ाइन बनाई गई है।

और इसमें कुछ डेकोरेशन के सामान भी हैं।

इसमें काफी सारे स्टाफ्स भी हैं।

ऊपर लाइट्स लगी हुई है।

और इसमें पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इसमें आसमान काफी सुहाना है।

इसमें काफी सारे वाहन लगे हुए हैं।

और इसमें दो बड़े बच्चे भी हैं।

पीछे की साइड एक घर है और काफी बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं।

यह पिक्चर एक जिम की है।

इसमें एक ए_सी भी है।

इसमें डेकोरेशन के लिए बैलूंस भी हैं।

यह फोटो एक बड़े से फिल्ड की है।

इसमें नीचे घास भी उगी हुई है।

जहां पर काफी सारे ऊन से बने हुए सामान हैं।

यह पिक्चर एक बार की है।

इसमें दो तीन व्यक्ति भी हैं।

यह पिक्चर एक गार्डन की है।

इसमें एक बेंच भी है।

और साइड में छोटे-छोटे पौधे हैं इसमें कुछ बड़े पैर भी हैं।

और नीचे घास उगी हुई है।

जिसमें दो व्यक्ति एक ऑटो के साथ खड़े हैं|।

इसमें कुछ लोग मछलियों को बेच रहे हैं।

यह पिक्चर एक पार्क की है।

ऊपर आसमान काफी सुहाना है।

इसमें कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं।

यह पिक्चर एक बड़े से हॉस्पिटल का है।

हॉस्पिटल का नाम बिहार ललित कला अकेदम है।

और रोड पे काफी ज्यादा व्हीकल्स खड़े हैं।

इसमें रोड को ग्रिल से घेरा हुआ है और हॉस्पिटल की बिल्डिंग काफी बड़ी हैं।

जिसमें थोड़ा पानी नजर आ रहा है इसमें एक ब्लैक बकुला भी है।

और बच्चों ने वाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ है।

जिसमें कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

यह पिक्चर एक नदी की है।

यह एक बिल्डिंग के अंदर है।

यह पिक्चर एक ट्रैक्टर का है।

इसमें एक रोड भी नजर आ रहा है।

इसके पीछे काफी सारे पेड़-पौधे भी हैं और दो गाड़ियां भी नजर आ रही है।

और एक पंखा भी नजर आ रहा है।

इसके नीचे कुछ ईंटे भी बिछे हुए हैं।

और एक व्यक्ति ने पिलर पकड़ा हुआ है।

और पार्क में घास उगी हुई है।

ऊपर का मौसम काफी सुहाना है और दो लाइट्स भी --

इसकी दीवार येलो कलर की है।

और यह रंगोली टाइल्स पे बना रही है।

यह पिक्चर एक डैम का है जो ब्लैक कलर का है इसमें से काफी तेजी से पानी निकल रहा है।

जिसमें कुछ लेडीज क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही हैं।

जिसमें काफी सारे खाने-पीने के सामान हैं।

और बाहर की साइड कुछ कुरकुरे भी नजर आ रहे हैं।

जिसका नाम इंडियन ऑइल है।

जिसमें काफी सारे प्लेयर्स --

यह पिक्चर एक प्रोजेक्ट क्लास की है।

कॉर्नर में कुछ लड़के भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

पीछे रेड और वाइट कलर से वॉल पेंटेड --

यह पिक्चर एक कॉलेज की है।

और इसकी बिल्डिंग काफी ज्यादा ही बड़ी है।

यह पिक्चर एक पार्क की है।

जिसमें दो व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं।

यह पिक्चर एक मार्केट की है जिसमें काफी सारे वाहन लगे हुए हैं।

और इसमें काफी सारी दुकानें भी हैं।